इस बिल्डिंग से लगी हुई बाउंड्री वॉल है। इस बिल्डिंग के गेट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है।

उस ऑफिस के दीवाल पर लिखा है श्री मारुति इस ऑफिस का शटर रिपेयर हो रहा है।